नीचे एक शोरूम बना हुआ है शोरूम में बाइक रखी दिखाई दे रही है इस में इस में ऑरेंज --

दोनों तरफ आइसक्रीम ट्री लगी हुई है उसके बाजू में एक कंप्यूटर लगा हुआ है कंप्यूटर अ ऑफ साइड मुँह रखा हु--

इस इमेज में महादेव की शिबलिंग की इमेज दिखाई गयी है शिवलिंग काले पत्थर की बनी शिबलिंग है।

इस इमेज में एक जंगल दिखाया गया है जंगल में बहोत सारे पेड़ लगे हुए है उसके बीच से एक सड़क जाते हुए दिखाई गयी है।

इसमें बीच में ईंट डली हुई है कलर भरे दिखाए गए है और चुनाई करते दिखाए गए वर्कर है।